दुकान है यह होटल है लिखा है केरला है तीन आदमी बहार खड़े हुए है।

यहाँ कालीन बिछे हुए हैं मैदान है वही सजावट हुई है अगल बगल भव्य सजावट हुआ है और ऐसा बनाया है।

ये कोई स्कूल है यहाँ टीचरे छह सात खड़ी है एक वाइट साड़ी में और एक ही कलर की साड़ी में --

एक आदमी खड़ा है टोपी वगरह लगाके भात डाली है खा रहे हैं सभी लोग एक पेड़ है।